इस फोटो में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के ऊपर सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है उस पे एच_पी गैस लिखा हुआ है।

इस फोटो में बहोत सारे अलग अलग रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं जो कि लगे हुए हैं।

सबने सफेद रंग के सूट और हरे रंग के दुपट्टे पहन रखा है।

एक पेड़ भी है उसमें लाइट लगा रखा है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।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

इस आदमी ने मुंह पे सफेद रंग का मास्क लगा रखा है और नीले रंग का कपड़ा पहन रखा है।